के टच के परिचय पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में आप के टच और के टच इंटरफेस के बारे में सीखेंगे
आप सीखेंगे कि कम्प्यूटर कीबोर्ड पर जिसमें अंग्रेज़ी अक्षर हैं स्पष्टतः तेज़ी और निपुणता से टाइप कैसे करें
आप यह भी सीखेंगे कि हर बार जब आप टाइप करते हैं बिना कीबोर्ड पर देख कर टाइप कैसे करें
के टच क्या है
के टच एक टाइपिंग ट्यूटर है
यह आपको सिखाता है कि कैसे ऑनलाइन संवादात्मक कीबोर्ड का इस्तेमाल करके टाइप करें
आप अपनी खुद की गति से टाइपिंग सीख सकते हैं
आप धीरे धीरे विशुद्धता के साथ अपनी टाइपिंग रफ्तार बढ़ा सकते हैं
के टच में आपके अभ्यास के लिए भिन्न कठिनता के स्तर में उपदेश या टाइपिंग नमूने भी हैं
यहाँ हम उबंटू लिनक्स 11104 पर के टच 171 का इस्तेमाल कर रहे हैं
आप उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर का इस्तेमाल करके के टच संस्थापन कर सकते हैं
उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर पर अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर उबंटू लिनक्स ट्यूटोरियल्स देखें
चलिए के टच खोलते हैं
सबसे पहले डैश होम पर क्लिक करें जो आपके कम्प्यूटर डेस्कटॉप पर सबसे ऊपर बाएं कोने में गोल बटन है
सर्च बॉक्स प्रदर्शित होता है
सर्च बॉक्स में क्टच टाइप करें
सर्च बॉक्स के नीचे क्टच आइकन दिखता है
इस पर क्लिक करें
के टच विंडो प्रदर्शित होती है
वैकल्पिक रूप से आप टर्मिनल का इस्तेमाल करके के टच खोल सकते हैं
टर्मिनल खोलने के लिए CTRL और ALT और ट बटनों को एक साथ दबाएँ
के टच खोलने के लिए टर्मिनल में कमांड क्टच टाइप करें और एंटर दबाएँ
अब अपने आप को के टच इंटरफेस से परिचित करते हैं
मुख्य मेन्यू में फाइल ट्रेनिंग सेटिंग्स और हेल्प मेन्यूस हैं
टाइपिंग का अभ्यास करने के लिए स्टार्ट न्यू सेशन पर क्लिक करके एक नया सेशन खोलें
टाइप करते समय रुकने के लिए पौसे सेशन पर क्लिक करें
अपनी टाइपिंग उन्नति जानने के लिए लेक्चर स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक करें
लेवेल जटिलता का स्तर दर्शाता है टाइपिंग के समय उपयोगित कीज के मामले में
स्पीड दर्शाता है कि एक मिनट में आप कितने अक्षर टाइप कर सकते हैं
करेक्टनेस संकेतक टाइपिंग की विशुद्धता के प्रतिशत को दर्शाता है
न्यू कैरेक्टर्स इन थिस लेवेल फील्ड अक्षरों को दर्शाता है जिनकी आपको चुनित स्तर पर अभ्यास करने की आवश्यकता है
टीचर्स लाइन उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें टाइप करना है
स्टूडेंट्स लाइन अक्षरों को दर्शाता है जो कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आपके द्वारा टाइप किये गये हैं
कीबोर्ड केंद्र में प्रदर्शित होता है
कीबोर्ड की पहली लाइन संख्या विशेष अक्षर और बैकस्पेस की दर्शाती है
टाइप किये गये अक्षरों को मिटाने के लिए Backspace की दबाएँ
कीबोर्ड की दूसरी लाइन में वर्णमाला कुछ विशेष अक्षर और Tab की सम्मिलित हैं
कीबोर्ड की तीसरी लाइन में वर्णमाला कोलोन सेमीकोलों और कैप्स लॉक की हैं
टाइप करते समय अगली लाइन में जाने के लिए Enter की दबाएँ
बड़े अक्षरों में टाइप करने के लिए कैप्स लॉक की दबाएँ
कीबोर्ड की चौथी लाइन में वर्णमाला विशेष अक्षर और shift की सम्मिलित हैं
बड़े अक्षरों में टाइप करने के लिए किसी भी वर्णमाला की को Shift की के साथ दबाएँ
की में ऊपर दिए गये अक्षर को टाइप करने के लिए Shift की को किसी भी दूसरी की के साथ दबाएँ
उदाहरणस्वरुप संख्या 1 वाले बटन में ऊपर विस्मयादिबोधक चिह्न है
विस्मयादिबोधक चिह्न को टाइप करने के लिए Shift की को 1 के साथ दबाएँ
कीबोर्ड की पांचवी लाइन में Ctrl Alt और फंक्शन की सम्मिलित हैं
यह स्पेस बार को भी सम्मिलित करता है
अब देखते हैं यदि यहाँ के टच कीबोर्ड लैपटॉप कीबोर्ड और डेस्कटॉप कीबोर्ड में कोई भिन्नता है
ध्यान दें कि के टच कीबोर्ड और लैपटॉप्स और डेस्कटॉप में इस्तेमाल किये जाने वाले कीबोर्ड्स समान हैं
अब कीबोर्ड पर अपनी उँगलियों का सही क्रम स्थान देखते हैं
इस स्लाइड पर देखें
यह उँगलियाँ और उनके नाम दर्शाता है
बाएँ से दायें ओर उँगलियों के नाम हैं लिटल फिंगर रिंग फिंगर मिडल फिंगर इंडेक्स फिंगर और थंब अपने कीबोर्ड पर अपना बायाँ हाथ कीबोर्ड की बायीं तरफ रखें
यह सुनिश्चित कर लें कि छोटी ऊँगली अक्षर आ पर हो अनामिका अक्षर एस पर हो मध्यमा अक्षर डी पर हो तर्जनी अखर फ़ पर हो
अब अपना दायाँ हाथ कीबोर्ड की दायीं तरफ रखें
सुनिश्चित कर लें कि छोटी ऊँगली कॉलनसेमीकॉलन की पर हो
अनामिका अक्षर ल पर हो मध्यमा अक्षर क पर हो तर्जनी अक्षर ज पर हो
स्पेस बार को दबाने के लिए अपना दायाँ अंगूठा इस्तेमाल करें
पहली बार जब आप के टच खोलते हैं टीचर्स लाइन डिफॉल्ट टेक्स्ट दर्शाती है
यह टेक्स्ट निर्देशों को सूचीबद्ध करता है
कि कैसे पाठ को चुनें और कैसे पाठों की टाइपिंग शुरू करें
इस ट्यूटोरियल के उद्देश्यों के लिए हम डिफॉल्ट टेक्स्ट टाइप करना छोड़ सकते हैं और लेक्चर चुनें
हालाँकि आप इस ट्यूटोरियल को रोक सकते हैं और डिफॉल्ट टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं
अब पाठों को टाइप करने के लिए लेक्चर चुनते हैं
मुख्य मेन्यू से फाइल चुनें ओपन लेक्चर पर क्लिक करें
सिलेक्ट ट्रेनिंग लेक्चर फाइल क टच डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
निम्न फोल्डर पाथ को ब्राउज़ करें
root gtusr gtshare gtkde4 gtapps जीटीकेटच englishktouchएक्सएमएल चुनें और ओपन पर क्लिक करें
ध्यान दें कि टीचर्स लाइन अब अक्षरों के अन्य समूह को दर्शाता है
अब टाइपिंग शुरू करें
डिफॉल्ट रूप से लेवेल 1 निर्धारित है और स्पीड शून्य पर निर्धारित है
इस लेवल में नये अक्षर वो अक्षर प्रदर्शित हैं जिन्हें हम इस लेवल में सीखेंगे
ध्यान दें कि कर्सर स्टुडेंट्स लाइन पर है
अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल करके टीचर्स लाइन में प्रदर्शित अक्षरों को टाइप करें
ध्यान दें जैसे ही हम टाइप करते हैं कैरेक्टर्स स्टुडेंट्स लाइन में प्रदर्शित होते हैं
अब स्पीड फील्ड में देखें
जैसे ही आप टाइप करते हैं संख्या आपके टाइप करने की गति पर आधारित बढ़ती या घटती है
यदि आप टाइप करना रोक देते हैं स्पीड गिनती घटती है
अब संख्या सात और आठ टाइप करते हैं जोकि टीचर्स लाइन में प्रदर्शित नहीं हैं
स्टुडेंट लाइन लाल हो गयी है
ऐसा इसलिए क्योंकि हमने गलत टाइप किया है या टाइपिंग में कुछ गलती की है
इसे मिटा दें और टाइपिंग पूरी करें

जब आप लाइन के अंत में पहुँचते हैं दूसरी लाइन पर जाने के लिए एंटर की दबाएँ
ध्यान दें टीचर्स लाइन अब टाइप करने के लिए अक्षरों का दूसरा समूह दर्शाती है
स्टुडेंट्स लाइन टाइप किये हुए टेक्स्ट से साफ़ हो गयी है
अब देखते हैं हमने कितना सही टाइप किया
करेक्टनेस फील्ड आपकी टाइपिंग की विशुद्धता का प्रतिशत दर्शाता है
उदाहरणस्वरुप हो सकता है यह 80 प्रतिशत दर्शाए
हमने अपना पहला टाइपिंग पाठ पूरा कर लिया
पहले कम गति से ठीक ठीक टाइप करना सीखने के लिए यह सही पद्धति है
एक बार जब हम बिना गलतियों के ठीक ठीक टाइप करना सीख लेते हैं हम अपनी टाइपिंग की गति बढ़ा सकते हैं
एक नया टाइपिंग सेशन शुरू करते हैं
स्टार्ट न्यू सेशन पर क्लिक करें
स्टार्ट न्यू ट्रेनिंग सेशन क टच डायलॉग बॉक्स में स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लेवेल पर क्लिक करें
आप क्या देखते हैं
टीचर्स लाइन में अक्षरों का एक समूह प्रदर्शित होता है
स्टुडेंट्स लाइन सभी अक्षरों से साफ़ है और खाली है
टाइपिंग शुरू करें
अभ्यास करते समय हो सकता है आप रुकना चाहें और बाद में फिर से शुरू करना चाहें
आप अपना सेशन कैसे रोकेंगे
पौसे सेशन पर क्लिक करें
ध्यान दें कि गति कम नहीं हुई
स्मरण हो कि यह कम होता है जब हम पहले का सेशन रोके बिना टाइपिंग रोकें
टाइपिंग फिर से करने के लिए टीचर्स लाइन में प्रदर्शित अगला अक्षर या शब्द टाइप करें
एक बार हम टाइपिंग पूरी कर लेते हैं हम करेक्टनेस फील्ड जाँचेंगे
यह टाइपिंग की विशुद्धता दर्शाता है
इसी के साथ हम के टच पर इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गये हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने के टच इंटरफेस के बारे में सीखा
हमने यह भी सीखा कि कैसे कीबोर्ड पर अपनी उँगलियाँ रखें
टीचर्स लाइन को देखकर टाइप करें
और अपना पहला टाइपिंग सेशन पूर्ण किया
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
के टच खोलें
लेवल 1 में टाइपिंग सेशन को पूरा करें
इस लेवल के साथ टाइपिंग का अभ्यास करें
कीज के लिए सही उँगलियों का इस्तेमाल करना याद रखें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरियल को सारांशित करता है
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं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
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं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
इस मिशन पर अधिक जानकारी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो लिंक पर उपलब्ध है
आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आप से विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद